ऑटो बैटरी वाली मिलती है। यह ऑटो में लिखा हुआ रहता है ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ।

ये एक कोलेज है ये कोलेज का नाम सुखदेव मुख्शाल्य्य कोलेज हैं |

एक टीम रेड टीम है और एक ब्लैक टीम है जो दोनों मिलकर यहाँ पर फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा गया है ।